लिबरे ऑफिस writer के text typing और बुनियादी स्वरूपण यानि basic formatting के इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्नलिखित सीखेंगे
writer में aligning text
bullets और क्रमांकन numbering
writer में cut copy paste options
bold underline और italic options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
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में gnu/लिनक्स का उपयोग कर रहे हैं और लिबरे ऑफिस सूट वर्जन 334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
आप writer में अपनी पसंद का एक document open कर सकते हैं और इन विशेषताओं को कार्यान्वित कर सकते हैं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
अतः चलिए शब्द word चुनिए औरalign leftपर click करें आप देखेंगे कि resume शब्द leftअलाइन हो गया है अर्थात यह document पेज के हाशिये की बायीं ओर हो गया है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
यदि हम justify पर click करते हैं आप देखेंगे कि resume शब्द अब इस तरह अलाइन हो गया है कि text पेज के दायें और बायें हाशिये के मध्य समान रखा है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
इसे अन्डू करते हैं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
अब ok button पर click करें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
चलिए type करेंname: ramesh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
अतः name fathers name colon mahesh के रूप में रिज्यूमे में दूसरा statement type करते हैं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
आप क्रमानुसार bullets के लिए indent बढ़ाने और घटाने के लिए टैब और shift कीज़ का उपयोग कर सकते हैं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
mothers शब्द के आगे cursor रखें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
यहाँ इन options के लिए shortcut कीज़ भी हैंcopy करने के लिए ctrl + c और paste करने के लिए ctrl + v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
अब देखते हैं कि इसे कैसे करें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
paste option पर click करें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
cut के लिए shortcut की हैctrl + x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
font size अभी 12 दिख रहा है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
उदाहरणस्वरूप चलिए heading education detailsको color करें
तो फिर से text education detailsको चुनें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
तो पहले heading education details को चुनें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
underline पर क्लिक करें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
अब हम लिबरे ऑफिस writer पर spoken tutorial की समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में हमने निम्न सीखा हैः
writer में text अलाइन करना
bullets और numbering
writer में cut copy और paste options
bold underline और italic options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
व्यापक नियतकार्य
bullets और numbering को सक्रिय करें
स्टाइल का चुनाव करें और कुछ प्वॉइंट लिखें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
text को italics करें
font color को लालरंग में बदलें
निम्न link पर उपलब्ध video को देखें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
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे की ओर से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
धन्यवाद